यह एक बस ड्राइवर है बस का नाम समीर है और बस ड्राइवर जैसा तरबूज जैसा लग रहा है बस ब्लू रंग के पुती हुई है ।

ट्रक से पेट्रोल निकाल जा रहा है | जिसमे-जिसमे एक व्यक्ति भी दिख रहा है ट्रक का गेट खुला हुआ है ।

यह एक नाई की दुकान है जिसमे नाई एक कस्टमर की कटिंग कर रहा है साइड मे एक कस्टमर भी वैट कर रह है ।

और यहाँ पर पीने के पानी के लिए कैंपर भी रखा हुआ है ।

यहां का आसमान मे पानी गिरने वाला है। हो रहा है। ये पुल बहुत ज्यादा ही बड़ा है।